इस फोटो में किसी पार्क का दृश्य दिखाया गया है पार्क के बाहर बाउंड्री के पास एक वाइट कलर का कार खड़ा है।

और पार्क के चारों तरफ सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग और अपार्टमेंट --

जहां ऊपर में बैलून से डेकोरेशन किया गया है इस दुकान में एक ए_सी भी लगा हुआ है।

जिसमें एक व्यक्ति स्कूटी लगाकरस्कूटी के ऊपर बैठा हुआ है।

बंधन बैंक य जो गेट हैवो शीशे का है।

एक साइड पिलर पे शुभ और एकसाइड लाभ लिखा हुआ है।

ग्राउंड मेंतीन पेर लगे हुए हैं।

यह फोटो जो लिया गया है यह किसी जिम के अंदर का है।

पीलाऔर ब्लू कलर का बैलून लगाया गया है इसमें--